आ हरयाली है। मतलब घास टाइप की लग रही है ये और ये स्कूल अभी बना नही है पूरे तरीके से ये बन रहा है। ये देखिये ये साइड से ये --

अम तो एक लड़की है। इसके हाथ में छाता है। एक पीछे वो लडक खड़ा हुआ है ये देखिये एक लड़की के पास में --

दोस्तों ये आँ ये जो मुझे लग रहा है ना ये कोई केमिस्ट्री लैब है। लैब टाइप का लग रहा है ये। ये लैब ही है।

ये देखिये यहाँ दो सिक्यूरिटी गार्ड हैं। गार्ड बैठे हुए हैं यहाँ। डेकोरेशन भी कितनी अमेजिंग कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना।

साइड में अगल बगल में पेड़ ही पेड़ हैं दोस्तों और इन्हें यहाँ पर बाँधा हुआ है। ये पालतू --

ये देखिये यहाँ पर सब लोग डेकोरेट हुए हुए हैं। सबने अच्छे-अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ पर कुछ --

और कितना बड़ा वाइट कलर का फ्लेक्स दिख रहा होगा आपको। एक रेड कलर का फ्लेक्स है इसमें और पूरे पे इसपे वाइट कलर हुआ हुआ है। उसमें एक पीछे पेड़ भी है दो --

बैठे हुए हैं। इन रस्सियों को बेच रहे हैं यहाँ और नीचे भी कुछ रस्सियाँ रखी हुई हैं वाइट है ब्लैक है येलो है ग्रीन है। दोस्तों ये देखिये ये --